यहाँ सामने मुझे एक स्टेज दिख रहा है जिनमें प्लस का साइन है साईं का क्रॉस सिंबल है।

पत्थर रखी हुई है मिट्टी रखी हुई है और हिरण है।